ये जिला मजिस्टरेट (magistrate) ऑफिस है जिसको जिला अधिकारी भी कहा जाता है यहाँ पे (पर) जो जिला अधिकारी होते हैं जिले के मालिक होते हैं।

ईसाईयों के साथ ही साथ इसमें और भी लोग जाते हैं जिसका वो होता है अपना --

यह त्रिपाठी फूट वियर है यहाँ पे खेल से सम्बन्धित सारी चीजे मिलती हैं। इसमें जूते ट्रैक सूट वगैरह सारा कुछ होते हैं। सील ओवर सारा कुछ मिलते हैं इसमें खेल सम्बन्धित जो भी आपको आवश्कता होती है यहाँ पे आईऐ आपको सारा चीज यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। यह अच्छी दुकान है।